इसमें नीचे एक अकार है ईस्कूटी है दो स्कूटी है दो बाइक है।

ऊपर एक बड़ा सा पुल गया हुआ है।

और अंदर वह एक भी एक इंसान है।

ये गेट के अंदर से फोटो लिया गया है। इसमें एक गेट भी दिखाई दे रहा है।

इसके अंदर ब्लू लाइट जल रहा है।

इसके नीचे जो डेक्स है उसमें लिखा हुआ है।

वह बाइक पर बैठा हुआ है और बहुत सारे सीढ़ी चहगने के बाद ऊपर होटल है।

इधर कुछ जानवर और मछली टाइप का बनाया गया है।

यह एक बिल्डिंग के ऊपर पोस्टर लखा हुआ है। जिसमें लिखा हुआ है डॉक्टर राहुल कुमार । जो एक आंख के डॉक्टर हैं।

इसके अंदर बहोत सारे पेड़ हैं।

इस के सामने के तरफ मिक्चर का पैकेट है।

और सामने बहुत अच्छा पहाड़ है वृक्ष है जंगल है।

और बहोत अच्छा मौसम किया हुआ है जिसमें ब्लू ब्लू बादल है।

कुछ गेट टाइप का लोहा का बनाया गया है।

मैं एक अच्छा सा सुंदर सा हिरण है जो इधर के जिधर सब फोटो लिया गया है उधर उस तरफ ही दिख रहा है।

यहां एक बारात जाने वाला गाड़ी को सजाया जा रहा है।

पूरे गाड़ी पर गजला और रेड कलर के रोजेस लगाए हुए हैं।

ये तालाब है जिसमें पानी भरा हुआ है।

ये जंगल जाते समय लोगों का फोटो घिचा हुआ है।

सामने एक बड़ा सा दरवाजा है जो बहोत डिजाइनिंग है।

व्हाइट कलर के शर्ट पहना हुआ है।